बजाज हीरो यामाहा सुजुकी होंडा टी_वी_एस --

हम देख रहे हैं काफी बड़ा--

रूम में के बाहर काफी सफाई और पॉट वगैरह लगाके फुल--

पिंक वाइट और ग्रे कलर के और काफी सारी चेयर्स भी यहां पे लगी हुई है।

और दो शॉप है यहां पे जिसकी दीवार व्हाइट कलर की हैं।